इनमे एक खिलाड़ी गेंद फेख रहा है दूसरा बैटिंग कर रहा है बाउंड्री पर एक सफ़ेद लाईन बनाई गयी है।

यह एक शॉप है। जिसके अंदर बोहोत सारे गुब्बारे छत्त के ऊपर दीवारों पे लगे हुए हैं। गुब्बारो का कलर व्हाइट एंड येलो व ब्लू है।

दो प्रकार की सब्जियां दाल व आचार रखा हुआ हैं।